हरे और लाल रंग से डेकोरेटेड है उसके बाद जो बॉल्स लगे हुए हैं वो ब्लू और सफेद रंग के उसमें कुछ हरे बॉल्स भी नजर आ रहे हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक मैदान नजर आ रहा है। जहां पे एक लड़का चेयर पर बैठा हुआ है।

उसके राइट साइड में पंजाब नेशनल बैंक नजर आ रहा है जहां से एक पुरुष बात करते बाहर निकल रहा है।

उसके पास में एक चेयर बनी हुई है चेयर लाल रंग के सो अअ कवर की गई हुई है और लकरी की चेयर है।